यह तस्वीर किसी अपार्टमेंट के बाहर की है।

यह तस्वीर रात्रि के समय किसी एयरपोर्ट की तस्वीर है।

जिसमे सामने पेट्रोल पंप पर उपस्थित मशीन व पेट्रोल पंप पर खड़ी कारे दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप पर ली गयी है जो पेट्रोल पंप पर बने हुए आफिस की ओर से ली गई है।

जहां पर लोगो के बैठने के लिए सोफा और कुशन इत्यादि कि व्यवस्था की गई है यह तस्वीर अंधेरे रूम मे ली गई है।

यह तस्वीर एक मैदान में बने पीले रंग की मकान की तस्वीर है जो किसी छोटे-से जगह में बनाई गई है।

की कांच टूटी हुई नजर आ रही है।

यह तस्वीर वैशाली के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की तस्वीर है जो--

यह तस्वीर एक बहुत बड़े व खूबसूरत अपार्टमेंट की तसवीर है जिसमें छे मंजिला एक बिल्डिंग को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में गंगा नदी के साथ-साथ गंगा नदी पर बने पुल को भी दिखाया गया है।

जिसमे इंडियन आयल का पेट्रोल पम्प दिखाया गया है उस पेट्रोल पम्प पर सामने एक तीन पहिया वाहन भी खड़ा है ।

यह तस्वीर एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कजरी खुर्द अंचल जन्दाहा वैशाली की तस्वीर है।

यह तस्वीर रात्रि के वक्त किसी मकान के बहार से ली गई तस्वीर है।